लॉबी है लॉबी के दोनों तरफ रूम्स है फ्रंट पर एक डेस्क है चेयर्स है कुछ --

दुकान है ये एलेक्ट्रॉनिक्स की है शायद| बाहर एक मयूरजग रखा है।

दुकान के बाहर एक टेबल रखा है स्टूल जो रेड कलर का है| रात का टाइम है दुकान के अंदर लाइटे जली हुई है।

ब्रिज पे भी कुछ लोग खड़े हैं|

रोड है जिसपे कुछ टाइल्स बिछी हुई हैं सामने के तरफ कुछ घर बनी ]